है यहां पे लाइट नजर आ रही है डंडे नजर आ रहे हैं।

आसमान नजर आ रहा है टावर नजर आ रहे हैं यहां पे--

शॉप नजर आ रही है।